कुछ पूजा के सामान भी रखे गए है चारों तरफ हवन यज्ञ के लिए--

अपना सामान बेचते हुए दिखाई दे रहा है।

फूलों से डेकोरेट किया गया है।

ये काफी सुंदर और बड़ा स्कूल लग रहा है ये व्हाइट और रेड कलर से --

यहां एक बड़ी सी गैलरी है उसके अंदर कुछ बाइक खड़े हैं और एक आदमी भी वहां पर खड़ा है।

मैं देख पा रही हूं यहां कुछ मिठाई और केक का शॉप है।